यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक फ्लाइओवर दिखाई दे रहा है।